और उसके ऊपर लिखा है होटल देवघर प्लेस उसके ऊपर भी एक दुकान है।

यहां टाइल्स लगा हुआ है।

और इस इमारत के अगल बगल में पेड़ पौधा है।

बहुत सारा तरह तरह का फूल है।

यह जो जा रहा है उधर सीढी दिया हुआ है।

इधर आदमी लोग भी काफी सारे हैं।

ट्राउजर और टॉप पहनी हुई है।

भी अगल बगल में पेड़ है।

ये कोई जगह है जहां पे शायद शादी हो रहा है।

लाइट लगाया हुआ है।

दुकान है जहां पर बोर्ड लगा होगा इस बोर्ड में लिखा हुआ शिव कलेक्शन ।

बहुत बड़ा-बड़ा गेट भी उधर दिया हुआ है इमारत के नीचे और इधर काफी अच्छे से पूरा सजाया हुआ है।

जहां पे लाइट लगा हुआ है।

और पूरा बड़ा बड़ा खिड़की है।

मंदिर है बड़ा सा मंदिर के उधर पेड़ है।

फूल से सजाया हुआ है और कुछ फूल नीचे भी रखा हुआ है।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है।

और बोर्ड लगा हुआ है।

ग्राउंड में नीचे मिट्टी भी है।

इधर भी एक लड़का है उसका हाथ दिख रहा है।

इधर साइड में खंभा है।

यहां रैक में बहुत सारे किताब है।

बहुत सारा समान सजाया हुआ है।

अर यहां पे एक औरत है जो इन बच्चों को डांस सिखा रही है।

पर यहा हेंगर मे कपड़ा भी टंगा हुआ है।